एथे एक पैलेस है सामणे एक फूलदान रख्या होया है।

जानदे हुए दिखाई दे रहे हैं सड़क दे किनारे देखते बहुत सारे पोस्टर लगे हुए ने--

स्केच पेन फेविकोल फेवीकोल ते--